ये तस्वीर में हमें एक बहुत ही बड़ा मैदान दिख रहा है वहाँ पे हमें बहुत सारे कुर्सियाँ रखे हुई नज़र आ रही हैं जो की लकड़ियों के बने हुए हैं।

बीचो बीच हमें एक कुर्सी दिख रही हैं जो की बहुत ही बड़ी और बहुत सुन्दर है लाल तथा सफ़ेद रंग की है।

उसके ही थोड़े सामने देखने से हमे एक बहुत ही ऊंचा छे मंजिलों वाला ईमारत देखने मिल रहा हैं।

शादी के मंडप को बहोत सुंदर-सुंदर फूल तथा पत्तियों से सजाया हुआ हैं वहाँ हमें मंडप में --

उसी तरफ हमे बहोत ही बड़ा तीन मंजिलों वाला ईमारत देखने मिल रहा हैं।

ये तस्वीर में हमें सड़क दिख रहा है सड़क के बीचो बीच में हमें बहुत ही बड़ा बिजली का खम्बा दिख रहा है। जिसके ऊपर --

वहीं पे सामने एक मेज रखा है जहाँ पे बहुत सारे सामान हैं वहीं पे हमें दो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जोकि खड़े हैं।

उसी की बाजु में एक ईमारत है उसी की पास में एक बिजली का खम्बा दिख रहा है जिसके ऊपर हमें बड़े-बड़े भाषा में पुलिस लिखा हुआ दिख रहा है।

वहीं पे कुछ दूर हमें दीवारों पे एक बहुत ही बड़ा शीशा लगा हुआ दिख रहा है वहीं पे हमें कुछ और सामग्री भी दिख रही है।